बेड रखा है और बेड पर एक गद्दा व दो तकिए रखे हुए हैं और उसके बाजू में टेबल कुर्सी रखी हुई है। बेडरूम बहोत सुंदर लग रहा है।

यहां सामने देवी जी की प्रतिमा दिख रही है।

घर के पीछे पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं। घर अच्छा लग रहा --

अपना बाद्दयन्त्र का प्रयोग करते हुए दिख रहें हैं | लड़का बैठे-बैठे तबला बजा रहा है और पीछे कुछ लड़किया खड़ी हुई बड़े ध्यान से देख रही --

यहाँ सामने एक प्लेट दिख रही है जिसमे कुछ खाने का सामान रखा हुआ है।

बेड पर एक गद्दा बा दो तकिये रखे हुए दिखाई दे रहे हैं बैडरूम बहोत अच्छा सजाया गया है।